ये एक ग्रॉउंड हे ओ यहाँ पर बहोत सारे झु ले भी हैं स्लाइड झूला भी हैं।

वहाँ पर एक अंकल निकल के जा रहे हैं।

यह एक स्टेडियम है यहां पर बहो-- यहां पर दो लोग हैं यहां पर एक अंकल जा रहे हैं।

वो हैं ब्लैक और गोल्डन सेम दरवाजें के ऊपर हैं वो हैं व्हिटस कलरस --

ये नाइट ऑरेंज कलर की है मल्टी है यहा पर दो कारें खड़ी हुई है व्हाइट कि दोनों और यहाँ पर एक नारियल का पेड़ा हे गा --

जिम है जहाँ पर अभी यहाँ एक जिम है बहुत बड़ा जहा पर न बहुत सारे जिम करने की मशीने रखेंगे।

यहाँ पर व्हाइट कलर की उसकी खिड़की हैंगी व्हाइट और ब्लू कलर की खिड़की हैंगी नीचे तीन कार और एक ब्लूट खड़ी है नीली --

ये एक कूलर की सापे यहा पर बहुत सारे फैंसी कूलर दिख रहे है।